ये तो शहर का रेस्टोरेंट टाइप का लग दिख रहा है | इसके अंदर गैलरी है।

आसमान खूब सुंदर दिखाई दे रहा है बगल में पेड़ पौधे हरे-हरे हैं जो भी बड़ा अच्छा देखने में लग रहा है।

यह मुजफ्फरपुर नगर निगम का कार्यालय है जोकि बड़ा अच्छा सुंदर साफ सुथरा--

ये मोटरसाइकिल गाड़ी अ रिपेयरिंग का दुकान है मोटर पाट का जो कि शहर में हो व्यवस्थित हो सकता है।